ये तो एक मंदिर भी है यहाँ पर सभी बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं और यह बहौत ही बड़ी मैदान है यहां पर लोग घूमने-फिरने भी आ --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

यहां पर ये बहोत सारी कलियाँ भी खिली हुई है और यह फूल बहोत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं यह फूल गुलाब के एैं --

यह बहुत-ही बड़ा होटल है यह होटल बहुत-ही बड़ा-बड़ा है यह दो-दो होटल है यह एक पहला होटल पीले रंग का है इसका बॉर्डर लाल रंग से कि गया है और यहां पर--

यह में जो आदमी बैठे हुए हैं पहला ए-एक आदमी हरे रंग की सेंट और नीले रंग की पैंट पहने हुआ और सर पर टोपी पहना हुआ है एक आदमी लाल रंग की शर्ट और नीले रंग की

ये आदमी यहाँ पर चाय पी रहा है यह अ और यह एक बहोत ही बड़ा होटल है यह आदमी चाय पीता हुआ चाय ई कप पल कुछ लिखा हुआ है और लाल रंग --

है यहां पर लाल रंग की गेट भी दिखाई पड़ रही है चारों और हरयाली ही हरयाली दिखाई है।

जिसे गुलाबी आंखें शर्ट और काले रंग का पेंट पहना हुआ दिखाई पड़ रहा है।

यहां पर छोटे नेट बड़े नेट और अ-अ मीडियम साइज वाले नेट फिर नेट फिटर्स बहोत सारी चीजे यहाँ पर गिरायी पड़ी हुई दिखाई --

पढ़ रही हैं यहां बहुत अच्छी-अच्छी चीजे भी गिर दिख रही हैं यहाँ पर।

बड रहे हैं ए यहां पे बादल और एकदम बादल सफेद रंग के दिखाई दे रहे है।

दो आदमी चल रहें हैं एक आदमी काले रंग का शर्ट और सफेद रंग की पेंट पहना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर आम का पेड़ नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ भी लगा हुआ दिखाई --

पर लगा है और यहाँ पर इस लाल टेबल पर तीन चार से ज़्यादा चेयर लगी हुई है और चेयर्स का रंग सफ़ेद है।

और वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो नीले रंग की शर्ट और सफेद रंग का पेंट पहना हुआ है।

पीले रंग का है जब लाइन जाती है तो इस जेनेरेटर को ओन करके बिजली पास की जाती है।

अ सभी आदमियों ने हेलमेट भी पहना हुआ है यहां बगल में एक दुकान है दुकान के बगल में गाड़ी भी खड़ी हुई --

ड़ी है आगे लाल रंग की टेम्पू भी जा रही है और बहुत सारे बैनर भी लगे हुए हैं।